बहोत सारे पेड़-पौधे हैं और समाने में खेत भी है जिसमें कुछ फसल लगाये हुए हैं।

पानी जो है थोड़ा-थोड़ा गिर रहा है और यहाँ पे पेड़ जो हैं जो हरे कलर के हैं।

जो की वाइट कलर का शर्ट टी-शर्ट पेहने हुए हैं कुछ ब्लू कलर का कुछ ब्लैक --

और यहाँ बहोत सारे बस लगे हुए हैं जो की ब्लू कलर के हैं और अपोजिट साइड में एक व्हाइट कलर का एक बस लगा है।

यहाँ पे एक बड़ा सा पार्क नजर आ रहा है। पार्क में बहुत सारे पेड़ लगाये हुए हैं जो हरे कलर के हैं | निचे में --

यह हमे सामने में एक बड़ा सा घर दिख रहा है। घर का कलर जो है वाइट कलर में है। और --